सफेद रंग का कच्छा पहना है उसमें लाल रंग की गुलाबी रंग की बनियान है उसमें सफेद रंग की बनियान है। उसमें सफेद रंग की बनियान है। उसमें सफेद रंग की जींस है। इसमें टाइल लगी हुई है। उ पीले रंग का कुछ लिखा हुआ है। इसमें पंखा लगा हुआ है।

इसमें एक पुल बना हुआ है इसमे काफी वो बने हुए है बीम खड़े हुए है गोल-गोल।

इसमें रेता पड़ा हुआ है इसमें मसाला पड़ा हुआ है इसमें पड़ा हुआ है इसमें बहुत बड़ी मिस्त्री बनाता है।

एक सर्विस की मशीन है इधर फोरव्हीलर पहिये लगे हुए हैं और बेंच सी लग रही है। इसमे इंसान है इधर छत है इधर शटर है। इधर ड्रम रखे हुए हैं।